यहां पे कुर्सी लगा हुआ है जो की रेड कलर है।

एल्वेस्टर का बना हुआ है और यहां पे सभी लगा हुआ है उसके अंदर सामान भी रखा हुआ है।

पे बहोत सारा सामान रखा हुआ--

बाहर बाइक भी खड़ा है और यहां पे शीशा भी लगा हुआ है।

स्टील का ग्रिल भी लगा हुआ है और खंबा भी गड़ा है।

यहां पे बहुत अच्छा नजारा दिखाई पड़ रहा है।

इतना बड़ा कार्टून रखा हुआ है और यहां पे एक प्लास्टिक नजर आ रहा है।

और यहां पे बहुत अच्छा नजारा है।

यहां पे एक फूल है और उसमें पानी निकल रहा है।

यहां पे बहुत अच्छा नजारा है।

यहां पे बहुत सारा सामान दिखाई पड़ रहा है और बाहर में बोर्ड भी लगा हुआ है।

एक जो है वो कुर्ती पहनी है और एक जो है जींस पहनी है।